एक कच्छा बहुत सारे कुर्सियाँ लगे हुई है कुछ कुर्सी एक ही कलर के है वैसे किताबे रखने वाला सफेद कलर की है और बैठने वाला काला कलर के है।

सामने बहुत सारे बस हैं| अलग-अलग तरह के बस हैं और बहुत सारे आदमी है खड़े होकर के कुछ आदमी खड़े होके हैं कुछ आदमी जा रहे हैं।

और बीच में बहुत बड़े एक लाईट लगे हुए हैं और कुछ गाड़ियां चल रही है और कुछ खड़ा हो--

और रास्ते में है और रास्ते में पानी है। दो ऊँची ऊँची पेड़ है। अलग अलग तरह के पेड़ है। कुछ छोटी पेड़ है। कोई बड़ी पेड़ है।